logical & other operators के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
logical operators
parallel assignment और
range operators
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
उबन्टु लिनक्स वर्जन 1204
ruby 193
इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपको लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का ज्ञान होना ज़रूरी है
आपको irb की जानकारी होना ज़रूरी है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
लॉजिकल ऑपरेटर्स को boolean ऑपरेटर्स कहते हैं
क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन के भागों का मूल्यांकन करते हैं
और ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करते हैं
logical operators हैं
double ampersand && जो है and
double pipe जो है or
exclamation ! जो है not
&&double ampersand और and सिर्फ ट्रू का मूल्यांकन करते हैं अगर दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हों
दूसरा एक्सप्रेशन का मूल्यांकन हुआ है अगर पहला ट्रू हो
दो फॉर्म्स मे अंतर है प्रेसिडन्स
सिंबॉलिक and जो है &&double ampersand उच्च प्रेसिडन्स रखता है
अब कुछ उदाहरण देखते हैं
हम इसके लिए irb उपयोग करेंगे
एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
इंटरैक्टिव ruby आरम्भ के लिए टाइप करें irb और एंटर दबाएं
टाइप करें 3 ग्रेटर दैन 2 स्पेस double ampersand स्पेस 4 लैस दैन 5
enter दबाएं
हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
यहाँ एक्सप्रेशन 1 जो है 3>2 ट्रू है
यहाँ एक्सप्रेशन 2जो है 4<5 भी ट्रू है
चूँकि दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
पिछली command प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं
और double ampersand सिंबल को वर्ड and से बदलें
enter दबाएं
हमें समान परिणाम मिलते हैं
पिछली कमांड प्राप्त करने के लिए फिर से अप एरो की दबाएं
एक्सप्रेशन 1 में ग्रेटर दैन चिन्ह को लैस दैन से बदलें
enter दबाएं
हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है
यह है क्योंकि 3<2 फॉल्स है
चूँकि पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है दूसरा एक्सप्रेशन मूल्यांकित नहीं होगा
अतः हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है
double pipe तथा or ट्रू का मूल्यांकन करते हैं अगर कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू है
दूसरा एक्सप्रेशन मूल्यांकित हुआ है अगर पहला फॉल्स है
दो फॉर्म्स मे अंतर है प्रेसिडन्स
सिंबॉलिक or जो है double pipe उच्च प्रेसिडन्स रखता है
अब कुछ उदाहरणों का प्रयास करते हैं
10 ग्रेटर दैन 6 स्पेस double pipe स्पेस 12लैस दैन 7
enter दबाएं
हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
यहाँ एक्सप्रेशन 1 जो है 10 > 6 ट्रू है
चूँकि पहला एक्सप्रेशन ट्रू है दूसरा एक्सप्रेशन मूल्यांकित नहीं होगा
अतः हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
पिछली command प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं
एक्सप्रेशन 1 में ग्रेटर दैन चिन्ह को लैस दैन से बदलें
और pipe सिंबल को वर्ड or से बदलें
enter दबाएं
यहाँ एक्सप्रेशन 1 जो है 10 < 6 फॉल्स है
एक्सप्रेशन 2 जो है 12 < 7 भी फॉल्स है
चूँकि दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है
! exclamation mark और not ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन की विपरीत वैल्यू रेतुरें करते है
अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो exclamation mark ऑपरेटर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है
अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा
दो फॉर्म्स मे अंतर है प्रेसिडन्स
सिंबॉलिक not जो है ! उच्च प्रेसिडन्स रखता है
अब not ऑपरेटर का प्रयास करते हैं
सबसे पहले टाइप करें 10 डबल इक्वल टू 10
enter दबाएं
हमें आउटपुट ट्रू मिलता है
उपरोक्त एक्सप्रेशन के परिणाम को उलटने के लिए
एक्सप्रेशन से पहले not ऑपरेटर जोड़ें
टाइप करें exclamation mark ब्रैकेट्स में 10 डबल इक्वल टू 10
enter दबाएं
हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है
irb कंसोल को क्लियर करने के लिए एकसाथ ctrl+l दबाएं
आगे parallel assignment के बारे में सीखते हैं
parallel assignment के द्वारा ruby कोड की सिंगल लाइन के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स आरम्भ हो सकते हैं
terminal पर जाएँ
parallel assignment उपयोग करके तीन वेरिएबल्स घोषित करें
टाइप करें a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30
और enter दबाएं
यहाँ 10 वेरिएबल a के लिए नियुक्त होगा
20 वेरिएबल b के लिए नियुक्त होगा
30 वेरिएबल c के लिए नियुक्त होगा
दायां किनारा array की तरह कार्य करेगा
अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को बायीं तरफ सूचीबद्ध करते हैं तो array नहीं खुलता है और सम्बंधित वेरिएबल्स को नियुक्त हो जाता है
हम arrays के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
अभी के लिए जाँच करते हैं कि क्या असाइनमेंट अच्छी तरह हुआ है
टाइप करें a और एंटर दबाएं
a में संचित वैल्यू 10 प्रदर्शित होती है
टाइप करें b और एंटर दबाएं
हमें 20 मिलता है
टाइप करें c और एंटर दबाएं
30 प्रदर्शित हुआ है
parallel assignment दो वेरिएबल्स में संचित वैल्यूज को अदलबदल करने के लिए भी उपयोगी है
अब वेरिएबल्स a और b की वैल्यूज को अदलबदल करते हैं
टाइप करें puts स्पेस डबल कोट्स में a इक्वल टू हैश कर्ली ब्रैकेट्स में a कॉमा डबल कोट्स में b इक्वल टू हैश कर्ली ब्रैकेट्स में b
एंटर दबाएं
हमे आउटपुट मिलता है a = 10
b=20
अब a और b को अदलबदल करते हैं
ऐसा करने के लिए टाइप करें
a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a
enter दबाएं
puts कमांड के लिए अप एरो की दो बार दबाएं और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट मिलता है
a=20
b=10
अब हम ruby में range के बारे में सीखेंगे
range में वैल्यूज नंबर्स कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं
ranges sequence को प्रकट करने के लिए उपयोग होते हैं
sequence range क्रमागत वैल्यूज की रेंज बनाने में उपयोगी है
यह रखता है शुरुवाती वैल्यू रेंज की वैल्यूज़ और अंतिम वैल्यू
दो डॉट ऑपरेटर इंक्लूसिव रेंज बनाते हैं
तीन डॉट ऑपरेटर एक्सक्लूसिव रेंज बनाते हैं
ranges यह पता लगाने के लिए उपयोग हुई हैं कि क्या एक वैल्यू किसी विशेष रेंज में भी झुकी है
हम यह करने के लिए === इक्वलिटी ऑपरेटर उपयोग करते हैं
अब हम ranges पर कुछ उदाहरणों का प्रयास करते हैं
टर्मिनल पर जाते हैं
टाइप करें ब्रैकेट्स में 1 दो डॉट्स 10 फिर डॉट टू अंडरस्कोर a
two dot ऑपरेटर inclusive range बनाता है
inclusive operator रेंज में शुरू और अंत दोनों वैल्यूज सम्मिलित करता है
यहाँ to _a मेथड range को सूची में बदलने के लिए उपयोग होता है
enter दबाएं
यहाँ आप देख सकते हैं कि वैल्यूज 1 और 10 रेंज में सम्मिलित हुई हैं
अब हम देखेंगे एक exclusive range ऑपरेटर
टाइप करें ब्रैकेट्स में 1 थ्री डॉट्स 10 फिर डॉट टू अंडरस्कोर a
three dot ऑपरेटर exclusive range बनाती है
exclusive range ऑपरेटर सीक्वेंस से अंतिम वैल्यू को निकालता है
enter दबाएं
यहाँ अंतिम वैल्यू 10 रेंज में सम्मिलित नहीं हुई है
अब जांचते हैं कि क्या 5 1 से 10 तक की रेंज में है
टाइप करें ब्रैकेट्स में 1 दो डॉट्स 10 तीन बार इक्वल टू और फिर 5
enter दबाएं
equality operator जांचने के लिए उपयोगी है कि क्या वैल्यू रेंज में है
हमें आउटपुट ट्रू मिलता है चूँकि 5 1 से 10 तक की रेंज में है
यह हमें इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
इस tutorial में हमने सीखा
logical operator जो हैं double ampersand double pipe और exclamation mark operators
parallel assignment उदाहरण: abc=102030
range operator inclusive operator और exclusive operator
एक नियत कार्य की तरह
parallel assignment उपयोग करके दो वेरिएबल्स घोषित करना और
जाँचें कि क्या उनका सम 20 और 50 के बीच में है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
spoken tutorial project team:
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलती है